यहाँ पर बहुत ही बड़ा खुला प्लेस है जिसमें भीड़-भाड़ बहुत सारा है एक कार है जो वाइट कलर का है और शीशा है जो ब्लैक कलर का है।

यह एक पिचिंग रोड है रोड के बगल मे डिवाइडर है वो व्हाइट और ब्लैक कलर से पैंट किया गया है।

-- और शटर है जो की लोहे का है ऊपर में छत है कुछ खंभे है जिसमें बिजली का है और ऊपर में आसमान है जो की नीला है।

फ्रिज है वेट लिफ्टर डम्बल है एक्सर्साइज़ है नीचे मे कार्पेट बीछा हुआ है जो कि स्किन कलर का है और वॉल है जो कि ग्रीन कलर का है।

क्वार्टर है और एक बगल में बहुत ही बड़ा मंदिर है जो की उजला कलर का है और ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसमान है।